यहाँ पर एक कैलंडर भी है।

यह एक फैक्ट्री है। यह फैक्ट्री में एक मशीन रखी हुई है। यह मशीन बहुत बड़ी मशीन है। यह फैक्ट्री में यही मशीन से कार्य किए जाते हैं ।

यह एक कॉफी शॉप है यह कॉफी शॉप में सिर्फ कॉफ़ी ही मिलती है यहाँ पर कोल्ड कॉफी हॉट कॉफी और अलग अलग प्रकार की कॉफी की वैरायटी मिलती है।

फ्री दिया जाता है। यह पैंट का नाम --